मूर्तियां है मंदिर है बावड़ियां है सीढ़ी है लोग है।

बाइक है स्कूटी है कुर्सियां है बोरी है लोग है दुकाने है सीढ़िया है स्वीलिंग है।

गमले है घर हैं पेड़ पौधे है चोंगे है।